और इस माल में बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं मैं और वाइट कलर भी लगा हुआ हैं मैं और वाइट कलर की फर्स भी हैं।

और अ एक बाहर निकलने का दरवाजा हैं और एक अंदर जाने का और एक कैमरा भी लगा हुआ हैं और एक साइड में फोर व्हीलर दिखाई दे रही--

दो बाल्टी रखी हुईं है पिंक और ब्लू कलर की सामने एक स्कूटी दिखाई दे रही है एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैं।

यह यह एलोरा बुक डीपो है यहाँ पे सभी पुस्तके मिलती हैं और कुछ लोग सामने खड़े हुए हैं और कुछ गाड़िया भी पड़ी हैं।

इधर साइड में एक आदमी नहा रहा हैं और दो आदमी देख रहे हैं नाँव पर दो नेवी ब्लू कलर की झंडी लगी हुई--